उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है भूरे रंग का--

इसके दीवाल का कलर येलो और भूरे रंग का है वाइट कलर की चेयर में बहोत सारे लोग बैठकर।

वॉटर इस्प्रे नजर आ रहा है।

यह एक ए_टी_एम नजर आ रहा है सामने ए_टी_एम की मशीन दिखाई दे रही है बाजू में।

बोहोत सारी लाइट जल रही है व्हाइट कलर के चेयर दिखाई दे रहे है एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा हैं।

यह एक जूलरी की दुकान नजर आ री है।

बाहर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

बाजू मे वाइट कलर की एक बीस्सी दी गई है जिसमे एसी लगा हुआ नजर आ रहा है पाइप लगी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक बड़ा डांस क्लास हॉल नजर आ रहा है भूरे रंग का दिवाल दिखाई दे रहा हैं जीसमें ए_सी लगी हुई नजर आ रही है छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं कांच के बड़े बड़े--

भूरे रंग का टेबल दिखाई दे रहा है एक ब्लैक कलर का बैग नजर रहा है व्हाइट कलर की दिवाल दिखाई दे रही है सीढ़ी बनी हुई है साइड में --

दीवाल में घड़ी लगी हुई नजर आ रही हैं।

तीन स्टेचू बने हुआ है ये साड़ी पहने हुआ दिखाई दे रहे है एक बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है।

बाहर दरवाजे का कलर ब्लैक है कांच का लगा हुआ है लाल कलर का पोस्टर दिखाई दे रहा है बाजू में एक--

ऑरेंज और येलो व्हाइट कलर के से डेकोरेट हुआ है ब्लैक कलर की चेयर नजर आ रही है।

लाल कलर का स्टेज बना हुआ है जिसमें एक लड़का बैठके गिटार बजा रहा है दूसरा लड़का बैंजो बाजा रहा है।